ये हमारे इलाका का स्टेट बैंक का ए.टी.एम. है यहाँ पे दो मशीन है एक मशीन से पैसा निकलता है।

बहुत ही मजा करता है इस ग्राउंड के चारो तरफ सुन्दर-सुन्दर पेड़ भी है।

ये हमारे इलाका का एक कार सर्विस सेंटर है।

यहाँ पर दस लोग मिल के खाना पकाता है।

इस मंदिर का वॉल का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा भी है।

यहाँ बच्चों से ले कर बड़े तक सब का बुक मिलता है।

इस ग्राउंड के बीच एक अशोक चक्र भी है।

यहाँ एक पूजा चल रहा है इसलिए मंदिर को बहुत अच्छे से लाइटिंग से सजाया गया है।

यहाँ का भगवन सब का पुकारा सुनता है यहाँ पे सब लोग मोंन से पूजा देता है।

इस जगह का नजारा बहुत ही सुन्दर है।

यहाँ पर ढ़ेर सारे मशीनस है यहाँ पर ख़राब मशीनों को फेंका जाता है।

इस सैलून में पाँच लोग काम करता है।

यहाँ पे सब्जियाँ मिलता है फल मिलता है इलाका का लोग इस मार्किट से सब्जियाँ फल खरीदता है।

यहां पर छुट्टियों में लोगो के भीड़ लगे रेहता है।

इस पैंडिल को कपड़ से और बांसों से बनाया गया है।

हियां पर एक छोटा-सा पहाड़ भी है।

इस सैलून के अंदर वर्कर्स लोग बहोत अच्छे से हेयर कटिंग करता है।

इस मंदिर के अंदर एक सुंदर सा सिंहासन भी है।

इहा सड़क के ऊपर खोदाई के काम चल रहा है।

ये हमारे इलाका का एक नदी है।

हर खाने में आलू मस्ट है।

यह माट में हर वक्त लोगे के भीर रेहता है।

ये रेडमी फ़ोन का सर्विस सेन्टर है।

इस जगह को बहुत अच्छे से सजाया गया है यहाँ पर एक सुन्दर सा भगवान बुद्ध का मूर्ति भी है।

इस चर्च को बहोत अच्छे से सजाया गया है।